शायद ये मार्केट हो सकता है।

शायद यह किसी उद्योग या कॉर्पोरेट जगत की बिल्डिंग है।

किसी स्कूल या कॉलेज के एनुअल --

मुहोल्ले का चोर्हाया दिखाया गया है।

यहाँ पर भिन्न एल्युमीनियम की चीज़ों को यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

यह इमेज किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया है।

किसी कपड़ो के शोरूम को प्रदर्शित किया गया है।

इसमें किसी व्यक्ति ने मंदिर की फोटो खिंची है।

यहाँ पर विथ इंस्टिट्यूट ऑफ़ द़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बोर्ड लगा हुआ है।

बेहद खूबसूरत तस्वीर जो किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी है।

इसमें पहाड़ और व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

तथा वह गेट प्रदर्शित करता हैं।